यहां पर टेबलें दिखाई दे रहीं हैं। यह एक बोर्ड दिक् नोटिस बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक घर में सेनटिंग लगी हुई सेनटिंग लगी है। वह दिखाई दे रही है।

मोड दिखाई दे रही है। कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं जो नीचे डले हुए हैं।

यहाँ पर एक स्टोर में फ्रिज में लड्डू रखे हुए हैं मिठाइयाँ दिख रही है डिब्बा रखा हुआ है काँटा दिखाई दे रहा है तोलने वाला जो ऊपर रखा हुआ है।

यहां पर एक गैट दिखाई दे रहा है जिसपर दो खम्मे लगे हुए हैं दो खम्मे बने हुए हैं डिजाइन बनी हुई है।

यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं गोल--

यहां पर आलू दिखाई दे रहे हैं जो कि किसी बर्तन में रखे हुए हैं आलू। यह आलू लग रहा है कि म धुले नहीं हैं। भूरे भूरे आलू दिखाई दे रहे हैं। मैले से मट्टी हुई है इनमें।

पर एक एरोप्लेन दिखाई दे रही है रोड पर जो चल रही है शायद।

यहां पर एक स्टोर दिखाई दे रही है ज स्टोर दिखाई दे रही है जिसमें --